बाहर बहोत सारी बल्ब नजर आ रही हैं।

नीचे बैठा आदमी नीले कलर की शर्ट पहने हुआ है उसके हाथ में एक बाल्टी है।

नीचे कुछ कंकड़ जैसी जमीन भी दिखाई दे रही है।

ये एक ढाबे की तस्वीर है जिसपर शेर ए पंजाब ढाबा--

पास ही में दो कूड़ेदान भी रखे हुए हैं हरे और नीले कलर के लाल कलर का--

यहां कई तरह के बोर्ड्स लगे हुए हैं एक बोर्ड पर प्रभात पाठक क्लासेस लिखा हुआ है एक बोर्ड पर रिलायंस लिखा हुआ है और एक बोर्ड पर ए_टी_एम ।

बाहर बहोत सारे पौधे हरे कलर के नजर आ रहे हैं।

ये एक शोरूम जैसा नजर आ रहा है जिस में एक लाल और गोल्डन कलर का सोफा रखा हुआ है।

जहां पर कुछ औरतें खड़ी हुई हैं और एक मरद भी खड़ा हुआ है।